नीचे फूल रखे हुए हैं और गुलाब है गेंदा है और ये फूल रखे हुए हैं ऊपर कुछ मालाएं टंगी हुई है।

ये कोई स्कूल की बिल्डिंग लगती है व्हाइट कलर की बिल्डिंग है और कोई कॉम्प्लेक्स जैसा है स्कूल का और बहुत बड़ा बाहर इसमें --

ऐसे करते हुए पीछे कुछ डम्बल्स रखे हुए हैं और पीछे कुछ पिक्चर्स लगी हुए हैं टेबल है शायद ये इनका ऑफिस लग रहा है ये।

खिड़कियां है पीछे काफी एयर हैं वहां पर हवा हवादार है काफी अच्छा --

और मार्केट प्लेस लग रही है बहुत भीड़ लग रही है ऑटो है बाइक चल रही है और काफी सारे दुकानें हैं।

ये एक स्टेशनरी शॉप है और बहुत बड़ी शॉप है इसमें हर एक वैरायटी स्टेशनरी है यहाँ कॉपी - किताबें हैं पेन - पेंसिल --